और एक तस्वीर भी दिखाई दे रही--

और उसके नीचे एक दुकान भी दिखाई दे रही है।

बाहर में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है।

एक सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

दे रहे हैं और यहां बाहर एक टेबल पर--

ए_टी_एम के बाहर काफी सारी बाइक भी दिखाई दे रही है।

जहां पर काफी सारी बकरियां घास खा रही है।

जिम में काफी सारे बलूंस भी दिखाई दे रहे हैं।

एक भगवान जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।

एक चेयर भी दिखाई दे रहा है ऊपर एक फैन भी दिखाई दे रहा--